एक बुड्ढा ने सफेद कलर का टी शर्ट और लूंगी पहना हुआ है।

पेड़ के नीचे बहोत सारे बाइक और स्कूटीया भी है। और बहुत सारे लोग भी हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

पीछे दरवाजे में एक लड़की का तस्वीर लगाया है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा शॉप दिखाई दे रहा है।

शॉप के अंदर ढ़ेर सारा वाशिंग मशीन रखा हुआ है।

बहोत सारे चेयर भी हैं।

और एक आदमी ने पीला टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

जिसने और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना--

मुझे इस तस्वीर में सफेद रंग का बतख दिखाई दे रहा है।

सामने में एक नदी भी है।

जो इस तस्वीर में बड़ा सा शॉप दिखाई दे रहा है।

कमरे के अंदर खाने की चीजें भी पेंटिंग किए हुए हैं।

के अंदर में तरह तरह के रंग रखे हुए हैं।

ऊपर में पानी बॉटल और आदमी भी है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़े बड़े पिलर भी है।

बहोत सारे गाड़िया भी है।

इस आदमी ने लाइट ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है।

इस मूर्ति को बहुत सजावट किया गया है।

उसने का रंग नीला कलर है।

उन्होंने हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक स्टूडियो दिखाई दे रहा है।

अंदर में एक आदमी भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा रिजॉर्ट दिख रहा है।

बहोत सारे रिक्शे और गाड़ी भी है।

और यहां पर खाने का और बहोत सारी चीज़ें भी है।

इस तस्वीर में हॉर्लिक्स भी है।

लंबे लंबे बेंच बहुत सारी कुर्सियां भी रखे हुए हैं।

बिल्डिंग में बालकनी और खिड़की भी है।

द हिंदुस्तान कॉन्सेप लिखा हुआ हैं।